यह श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडिम है यहाँ पर बच्चे क्रिकेट फुटबॉल आदि खेलते हैं।

सड़क के किनारे एक मैदान है जिसमे छोटे बड़े पेड़ --

यह एक नदी है। यह नदी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी तथा चौड़ी है। इसमें बहुत से पानी है।

है टेबुल लगा हुआ है । टेबुल पर बच्चे लाइन बाई लाइन बैठे हुए है।